आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग व्हाइट कलर कलर की गई जिसमें--

ऊपर कुछ लिखा गया है चारों तरफ से व्हाइट दीवाल भी दिख रही है फर्श भी व्हाइट कलर की ही है।

सड़क के किनारे बहोत सारी बाइक खड़ी है बाइक के ठीक सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग के अम--

चारो तरफ से सामान साजे हुए है अनेक प्रकार के सामान है यहां पे।

जिसमें अनेक प्रकार के टू व्हीलर्स रखी गई है चलती फिरती शोरूम है आगे नीचे चक्का लगा हुआ है आगे--

ये एस_बी_आई बैंक का बैंक के ठीक सामने बहोत सारी गाड़ियां है यहां बहोत सा--

एक हॉल है हॉल मे कुछ लड़कियां लड़कियां जमीन होके डांस कर रही है ऊपर छत भी है छत पे पंखे लगे हुए--

आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं पानी भी ब्लैक कलर दिख रहा चारों तरफ ब्लैक की ब्लैक दिखाई दे रहा है।

सामने एक बि बहोत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे बि बना हु बरामदा जैसा बना हुआ है उसके नीचे दो--

येलो कलर की है ब्लैक कलर की कांच लगी हुई है बस के सामने एक व्यक्ति खड़ा है बस के ऊपर--

एक पर्दा भी टांगा गया है जिसमें कुछ लिखा गया है चारों तरफ से आकाश दिखाई दे रहा है खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां रेड एंड व्हाइट दो कलर के इंटें बिछाई हुई है ईंट के बीचो बिच उहूं--

एक खेत है। खेत में फसल लगाई गई है। फसल खेत के मेड के किनारे बहुत सारे पेड़ भी है। सामने पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

नदी के किनारे के ऊमूक पर पुल बना हुआ पुल पर एक व्यक्ति जे साइकिल से जा रहा है।